एक बड़ा सा एक ग्राउंड टाइप बना हुआ है गार्डन टाइप हुआ है यहा पे जो जो मे जो टहलने की जगह दी है रोड दिया है उसके उपर पिंक एंड येल्लो पत्थर लगे हुए है डिज़ाइन बनी हुई है उनकी--

पानी का कुंआ बना हुआ है कुंआ जो है वो अंदर ग अंदर उतारने के लिए इसमे जीने बने हुए है अंदर बहोत अंदर और बहोत सारे जीने बने हुए है अंदर गुफाए वगेरा बनी हुई है शायद बहुत पुराना कुंआ है।

बाहर एक व्हाइट कलर की बाइक कार आ रही है व पीछे उनके बाइक वगैरा भी हैं और जो लेडी सब्जी की दुकान लगई हुई है उन्होंने पिंक कलर की साड़ी पेहनी हुई है उनकी सब्जी उनकी बहुत सारी सब्जी रखी हुई है इनके सामने--

बड़ा सा एक बड़ा स पार्क बना हुआ है पार्क मे यहाँ पे वन्डर वर्ल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे रेड कलर की छिटस है पर जंडे लगे हुए है पिंक पर्पल रेड हर कलर के एंड यहाँ पे मंदिर बना हुआ मंदिर टाइप बना हुआ है।

है यहाँ बोरी है बहुत सारी बड़ी बड़ी बहार बाइके खड़ी हुई है साइकिले खड़ी हुई है व्हाइट कलर की ब्लैक कलर की एक साइकिल खड़ी हुई है।

एक बड़ा सा गार्डन दिया हुआ है पार्क बना हुआ है उसमे बीच मे लोगो के चलने के लिए टेहलने के लिए जगह और टाइप बना हुआ है पास मे घसे दी हुई है बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है।